और यहां पे बहुत सारे चेयर्स रखे गये है बैठने के लिए और यहां पे बहोत सारे लोग आएं --

और यहां पर लोग आ आ रहे हैं।

बहोत सारे एल_ई_डी लाइट्स --

पॉट्स में लाइट्स को लगाकर छोड़ गया वायरिंग लगाके--

यहां पे वाटर बॉटल बिस्किट के डब्बे बहो ए_सी बहुत सारा--

बाजू यहां पे बड़े बड़े कार्टून्स को एक के ऊपर एक यहां पे रखा गया बाहर लोग भी खड़े हुए कैमरा भी ए_सी भी है।

ए_सी लगाई गई है यहाँ पे घडी भी है बहोत सारे यहाँ पे--

और उनमें कंजर जमा हुआ है और हरी भरी घास सटी हुई है।

और यहां बे में मच्छिया भी है नीचे का कलर चेंज हो रहा--

कपड़ों को जींसों को रखा हुआ है यहां पे जमा के--